नीले कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

हमे यहाँ एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा हैं।

हमे यहाँ एक लायब्रेरी जैसे पुस्तकालय दिखाई दे रहा हैं।

हमें यहां एक कांच की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

हमें यहां एक मकान का दृश्य दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति नजर आ रहा है।

एक काले कलर की चटाई दिख रही है।

हमें यहां एक बड़ा मॉल दिखाई दे रहा है।

हमें यहां एक होटल दिख रही है।

एक लोहे का डंडा दिख रहा हैं मोटर दिख --

यहां एक दुकान दिख रही है।